यह एक ऐरोप्लेन है वहां पर कुछ लोग खड़े हुए है और गार्डन बने हुए है हरे-भरे है और एक खंभा है साइड में।

ये एक रूम है उसके अंदर एक बेड है परदे लगे हुए हैं।

फोटो फूलों का डेकोरेशन हो रहा है ए गणपती भगवान की मूर्ति है और नीचे टेबल टेबल लगी लगी हुई है।

अम्म अ उस पे उस बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और साइड में बहुत बड़े-बड़े ए पेड़ लग लगे हुए हैं बहुत सारे।